और ऊपर बादल दिखाई दे रहें है जो ब्लू स्काइ कलर व्हाइट कलर दिख रहे हैं और यहाँ पर लकड़ियाँ लगी हुई है।

यहाँ पे सामने दो लोग दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं तो यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है जिसपे खाने की चीज मिलती है और यहाँ पे पीछे साइड को बिल्डिंग बनी हुई है।

यहाँ पे सामने मन्दिर बना हुआ है और यहाँ पे बहोत सारी लाइट्स वगेरह लगी हुई हैं सर्किट लगी हुई हैं।

यहाँ पे इ व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं| यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं खंबे लगे हुए हैं झोपड़ी बनी हुई है और यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं| उनमें ग्रीन कलर में पत्ते लगे हुए हैं नीचे ग्रीन कलर में घास लगी है और ऊपर बादल दिखाई दे रहे हैं।